चर्च दिखाई दे रहा है सामने की तरफ लोग ममम अंदर जाते नजर आ रहे है ये बहुत अच्छा मौसम लग रहा है।

इस चित्र में एक मूर्ति दिखाई दे रही है जहापे आस पास में पूजा हो रही है सफ़ेद हरे रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

अंदर की तरफ बहुत सारे लोग दिखाई जाते दिखाई दे रहे है आसपास लाइटे नजर आ रही है।

में स्टेट बैंक ए_टी_एम दिखाई दे रहा है सामने कचरा पड़ा नजर आ रहा है सामने की तरफ एक लाल रंग की दुकानें दिखाई दे रही है।

इस चित्र में पीछे नीला आसमान दिख रहा है नज़र आ रही है हरे भरे पेड़ पौधे सुंदर लग रहे हैं पीछे की तरफ दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र मे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे है और सामने के तरफ पहाड़ नजर आ रहे है नीचे की तरफ बहुत सुंदर दृश्य लग रहा है पीछे की तरफ भी एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो बहुत सुंदर लग रहा है।